और सामने से एक आदमी जिम की तरफ आ रहा--

जिसमें सामने बहुत से पोस्टर देखने को मिल रहे हैं।

और एक औरत पीली साड़ी में खड़ी है।

और एक पोस्टर पर अस्सी रूपए का रेट भी लिख रहे--

वो नीचे बहुत अच्छी ईंट बिछी हुई है।

सामने ही एक बोर्ड लगा हुआ है।

इसमें बहुत से तोते भी है।

अउर बहुत सा समान भी रखा हुआ है।

और सामने ही दो पीले कलर की बस खड़ी हुई है।

जिसमें नीचे बहुत अच्छी टाइल लगी हुई है।

और बहुत अच्छी मेज है और बहुत सी कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

यह एक बहुत अच्छी नदी है जिसमें बहुत अच्छा व्हाइट कलर का पानी जा रहा है।

और एक नदी भी बरा बीच में को जा रही है।

अऊर लाल लाइट भी लगी हुई है।

यह एक बहुत अच्छा फील्ड है।

यह एक बहुत अच्छा बैंक्वट हॉल है।

इसमें कार्य लय सेवा प्रबंधक एवं अधिकारी निवास उत्तर प्रदेश परिवहन निगर सहारनपुर का बहुत अच्छा बोर्ड लगा हुआ है।

और सामने से दो कारे जा रही--

जिसके नीचे बहुत अच्छी टाइल लगी हुई है।

और वाइट कलर का कलर हो रहा है।